लड़का दिख रहा है पार्किंग में लड़का खड़ा हो के अपना पिक खींचा रहा है बहुत ही अच्छा सुंदर लड़का दिखाई दे रहा है बहुत ही फूलों की बागान दिख रहा है।

और अति सुंदर दिखने में सामान भी सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है कपड़ा लता भी दिखाई दे रहा है।

गोलाई झरना का है बगल में झाड़ी है।

और बहोत सारे लोग यहां पे अपना आते हैं अपना राशन पानी ले--

बहुत ही ब्रा ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड के बगल में वाइट का मकान दिख रहा है वाइट मकान के बगल में वृक्ष दिख रहा है वृक्ष के --